यह एक दुकान है इस दुकान में बहुत सारा बोतल दिखाई दे रही है।

उसका बगल में पानी बॉटल रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा आदमी लोग बैठे हुए हैं।

यहां बहोत लोग आदमी भीड़ लगाए है।

यह एक रूम है इस रूम में बहुत सारा फ्लावर रखें गए हैं।

नीचे बाल्टी रखा हुआ है।

पहाड़ी के पास बहोत हरा भरा पेड़ पौधे दिख रहा है।

यहां पर्दा से ओहार किया हुआ है।

यह एक बाइक का शोरूम है।

ये शोरूम में बहोत सारा बाइके लगाई गई हैं।

और यहां पर बहोत सारा कुर्सियां भी है।

एक बड़ा सा काउंटर भी है।

नीचे कालीन बिछाया हुआ है इसमें पंखा भी लगाया गया है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है।

यहां पर लाइटें लगाई गई है।